इसके बेसमेंट में एक कार खड़ी भी है जिसका कलर व्हाइट है। और यहाँ घर का कलर भी लाइट ऑरेंज और ब्राउन दिखाई दे रहा है और यह रात का समय है। ला सामने से लाइट चमकते हुए दिखाई दे रही है।

कुछ जगह पर घास है कुछ जगह पर घास नहीं है। यहाँ पर मुझे एक गाड़ी भी खड़ी भी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर हेलमेट रखा हुआ है।

यह ततवीर में मुझे एक यहां पर एक ऊ डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। डिपार्टमेंट में का कलर मुझे यहां पर ऑरेंज दिखाई दे रहा है जिसमे येलो कलर की सेडिंग की गई हुई है।

सडक की कंडीसन इतनी साफ सुथरी दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पर एक गड्डा है गड्डे में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पीके पीछे के तरफ मुझे बहुत सारे खेत दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड-पोधे भी दिखाई दे रहे---

यह तस्वीर में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग का कलर मुझे सफेद दिखाई दे रहा है। बाहर की तरफ बहुत सारी खिडकिया दिखाई दे रही है। सामने की तरफ मुझे खु खुली यहाँ पर जमीन दिखाई दे रही है। ईसमे कई जगह पर घास है कई जगह पर साफ घास नहीं है। और यहाँ पे कुछ पेड- पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।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

वो एक तलाब में मुझे कुछ लोग नाव से सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बीच मे एक झरना भी लगा हुआ है। पीछे की तरफ मुझे बहुत सारे पेड- पोधे दिखाई दे रहे हैं। आसमान बिलकुल साफ- सुथरा और खुला दिखाई दे रहा है। और यह द्रश्य देखने पर बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यह तस्वीर मैं मुझे एक डिपार्टमेंट दिख दिखाई दे रहा है जिसका कलर व्हाइट ह।

तसवीर मैं मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रही है। मस्जिद के ऊपर जो च मीनार बनी हुई है और उसके ऊपर चाँद बने हुये हैं। यह देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और शानदार लग रहा है। मस्जिद के एक साइड में बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़- पौधे दिखाई दे रहे हैं।